तथा सारी साड़िया ऊपर टंगी हुई--

दोनों के हाथ में एक थैली रखी हुई है जिसमें कागज रखा हुआ है।

इसके दीवार को पीले रंग से पेंट किया गया है।

घर के बोर्डर को भगवा रंग से पेंट किया गया है एवं घर में थंबे भी लगाए गए हैं।

इस हाल को सफेद रंग से पेंट किया गया है तथा साइड में एक मंदिर भी बनाया गया है।

यह एक होटल का दृश्य है जहां पर बहुत सारी टेबल एवं कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

इस होटल को काले रंग से पेंट किया गया है तथा इसके सीलिंग को भी काले रंग से पेंट किया गया है।

सीलिंग पर सीलिंग लाइटे लगाई गई है एकदम सफेद रंग की।

यह एक फ्रूट सेंटर है जिसका नाम महादेव फ्रूट सेंटर है।

एक आदमी कैरेटो को उठा कर गाड़ी में भर रहा है।

उसके नीचे वाले रेक पर मुहर रखे हुए हैं तथा उसके बाद सभी रेकों पर मुहर ही रखे हुए हैं।

इस रास्ते में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं एवं कुछ दूरी पर एक पुरुष एवं एक महिला दिखाई दे रही है।

दरवाजे के बगल में एक छावनी की गई है।

जिसकी छावनी पाल प्लास्टिक की की गई है।

बच्चे के गले में एक लाल रंग का धागा भी लगा हुआ है ।

बच्चों के साथ कुछ शिक्षक भी खड़े हैं तथा कुछ अन्य बच्चे भी खड़े हैं।

अभी पेड़ों पर कुछ कम पत्ते दिखाई दे रहे हैं तथा धरती पर बहोत सारे पत्ते बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सारी महिलाएं अपनी अपनी चटाई ले कर बैठी हुईं ह--

बीच में एक पत्थर है तथा दोनों तरफ से पानी जा रही है।

यहां पर एक महल भी बना हुआ है जिसे सफेद रंग से पेंट किया गया है एवम उसके दरवाजे को लाल रंग से पेंट किया गया है।

महल के सामने के मैदान में बहोत सारे घास हैं।

यह एक जलमीनार का बिजली ऑफिस है जहां पर एक इंजीनियर आके कुछ तारों को काट रहा है।

इस इंजिनियर ने सफेद रंग की टोपी फूल पेंट शर्ट और जूता भी पहना हुआ है।

होटल के सामने दो बाइक तथा एक साइकल खड़ी है।

इस दुकान में एक बड़ी एल_ई_डी लाइट भी लगी हुई है तथा एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक फूलों की दुकान है जहां पर बहोत सारे फूल रखे हुए हैं।